किनारे किनारे घर बने हुए है बोहोत सारी यहाँ पे घासे है छोटे- छोटे पेड लगे हुए है हरे रंग के बड़े -बड़े भी पेड़ है आसमान सिलेटी सफे --

जैसा की मै देख पा रही हू यहाँ पर बहोत सारी स्कुटीया खड़ी हुई है यहाँ पे जो शॉप है दुकान है यहाँ पे कल गाड़ियों की या जमीन जो कि सिलेटी --

सिलेटी व्हाइट में है बोहोत सारी यहाँ पे घासें और झाडियाँ है और यहाँ पे बड़ा -सा एक मैदान है जिसमें बोहोत सारी हरी- हरी घासे हैं।

कि मैं देख पायी यहाँ पे एक बडा-से ग्राउंड है जमीन में बोहोत सारी हरी -हरी घासें और भूरे -भूरे रंग की मिट्टी है यहाँ पे आदमी एक लेटा हुआ है उस --

जैसा कि मैं देख पायी यहाँ पे बोहोत सारे ट्रक खड़े हुए है जोकि भुरे रंग के है यहाँ पे बड़ी -बड़ी बोहोत सारी बिल्डिंगे है और यहाँ पे एक टिन पड़ी हुई हैं।

जैसे की मै देख पा रही हू यहाँ पे बड़ी सी नदी है यहाँ पे एक बड़ा सा पूल बना हुआ है जिसमे रेलिंग भी लगी हुई है यहाँ पे बड़े-बड़े खंबे भी लगाए हूए है।

पेड भी लगे हुए है आसमान जो की सिलेटी और बैंगनी रंग मे है किनारे - किनारे बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है दूर - दूर तक --

नीचे बोहोत सारे पत्थर भी है जो की भुरे और सिलेटी रंग मे भी है और यहाँ पर अ एक लकड़ी भी लगी हुई --

बाईके खड़ी हुई है लोग यहाँ पर है जमीन का रंग भुरा सिलेटी --

कि मै देख पा रही हू यहाँ पे ऍक्सिस बैक है यहाँ पे बोर्ड लगा हूआ है जो कि भुरे रंग का है दिवाल गुलाबी रंग कि है बहोत सारी बाईके खड़ी हुई है लोग खड़े हुए है।

बोहत सारे यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ हैं हरे-हरे रंग के बोहत सारे पेड़ लगे हुए हैं मंदिर है यहाँ पास सफेद रंग के छत है और यहाँ--

जैसे मैं देख पाई यहाँ पे बड़ा -से हॉल है दिवाल जोकि क्रिम और बॉर्डर वस भूरे रंग का है यहाँ पे सोफे पड़े सोफा पड़ा हुआ है और दिल की डेकोरेशन --

क्रीम रंग के है बोहत सारे झालरे लटक रही है सफेद रंग कि है लिफ्ट लगी हुई है जिन मे और यहाँ पर छत ऊपर कि भुरे रंग कि--

यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं बोहत सारी तारे पड़ी हुई हैं यहाँ पे हरे रंग के टीन लगे हुई हैं यहाँ पर--

मै देख पा रही हूँ यहाँ पर बड़ी सी गंगा जी है जिसमे पानी का रंग सिलेटी है बोहत बोहत सारे नाव है यहाँ पर और यहाँ पे जमीन है जो की भुरे रंग--

जैसा की मै देख पा रही हूँ यहाँ पे एक बड़ा से रूम है जहां पे बहोत सारे शीशे लगे हुए हैं पंखे टेबल फैन वाले है और खुरसिया जोकी--

कि मै देख पाई यहाँ पे बड़ा सा गार्डन है यहाँ पे बहोत सारे फूल लगे हुए है जो की लाल पिले हरे सफेद--

जैसे की मै देख पा रही हु यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है बहोत सारी बल्लीया लगी हुई है लोहै कि सरिया भी है यहाँ पे जो जमीन है वो सिलेटी रंग कि है यहाँ पे दो लोग--

टंकी रखी है लाल रंग कि यहाँ पे बालटी है और पासमे कुडा भी है लाडका जोकी सिलेटी रंग कि जॅकेट पेहने हुए है और यहाँ पे बहोत सारे डिब्बे भी रख--

कि मै देख पा रही हू यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे बहोत सारी मशीने है पेट्रोल कि बहोत सारे हरे-हरे रंग के पेड़ लगे है छत है सफेद मे--

कि मै देख पा रही हूँ यहाँ पे बोहत सारी बसे खड़ी हुई है पीछे भी दिवाल भी हैं जोकी भुरे रंग मे है जमीन जो की भुरे रंग कि है तारे पड़ी हुई हैं बहोत सारे--

यहाँ पे एक लड़का बैठा हैं जोकी काले कपड़ा पहने बोहत सारी ऊपर लाईटे लगी हुई है और एसी भी है यहाँ पर एक मेज है जिसमे लाल रंग का कपड़ा--

जोकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बड़ा -सा मैदान है जिसमें हरी- हरी बोहोत सारी घासे है बोहोत सारे यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए है जोकि हरे -हरे रंग के हैं।

सारी लाईटे लगी हुई है पंखे है छत उपर कि सफेद रंग कि है फर्स भुरे रंग कि है और यहाँ पे बच्चे जो की योगा करते हुए दिखाई दे रहे--